सब आते हैं खेलने के लिए शाम में सुबह में भी आते है और खेलने के लिए और बहुत खूबसूरत मैदान है यहाँ ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। .